जैसे हम यहां पर देख रहे हैं ये गुजराती स्टोर है जहां साड़ियां चनिया चोली ड्रेस मटेरियल --

जैसे कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि एक टैटू की दुकान है।

जो नई नई खुली है जिसमें गुब्बारे लगे हुए हैं।

जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं यह एक पेट्रोल पंप है। जहां गाड़ियां पेट्रोल भरवा रही है कुछ गाड़ियां हवा पुरा रही है।

ये एक पार्किंग एरिया है जहां पर बहोत सारी ओटो रिक्शा है।